तथा यहां पर जो बॉउंड्री बनी है वो नीले और हरे नीले रंग की है और यहाँ पर गेट लगा है।